एक टेबल पर कुछ फाइलें पानी की बॉटल और सैनेटाईज़र भी नजर आ रहा है।

और एक एक्टिवा नजर आ रही है बादल बिलकुल ऐसे नजर आ रहे है जैसे की गरजने को तैयार हो।

बहोत सी फाइल्स और किताबे लैपटॉप नजर आ रहा है।

यह एक टेनिस कोर्ट नजर आ रहा है जहाँ पर पूरी दीवारें --

उनके हाथों में जौं भी दिखाई दे रही है कुछ के हाथ में टोकना भी दिखाई पड़ रहा है।

पुल भी नजर आ रहे हैं जिसके निचे कुछ जगह रेत नजर आ रही है तो कुछ जगह घांस भी दिखाई दे रही है।